पीने में बहोत स्वादिष्ट लगता है।

वहाँ पे एक आदमी बाल कटाने के लिए आया --

यहाँ पे बहोत सारे लोगों की --

यहाँ पे बहुत सारी कुर्सी लगी हुई हैं।

बेलूनों से सजावट किया गया है।

वहाँ पे एक आदमी बैग लेके खड़ा है।

बहुत बड़ा है। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टरस खड़े हैं।

यहाँ पे नाइन से टेन तक की --

यहाँ पे बहुत बड़ा पहाड़ है।

आइब्रो बनाने बाल कटाने फेशियल कराने --